जो सोफे के बराबर में बहुत सा सामान भी धरा हुआ है।

और निचली साइड एक पन्नी पड़ी है।

और हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और नीचे वाली साइड टाइल भी लग रही है।

और यहां पर ये कुछ ग्रिल भी लग रही है।

और पीछे की साइड कुछ बॉक्स और गड्डे भी धरे हुए हैं।

और बराबर में खिड़कियां भी सीसे की लग रही है।

और आगे रेल की पटडी है यहां पर।

और यहां पर दो खिड़की भी दिख रही है।

आगे माता की तस्वीर भी धरी हुई है।

और मिस्त्री के अलावे एक फीता भी दिख रहा है।

एक मेला है जो उस मेले में बहुत से हिंडोले लग रहे हैं।

और यहां पर कुछ कारा के भी दिख रहे--

यह एक फूलों की मार्केट है।